यह देखिये की यहाँ कुछ आदमी ग़ुलाल बेच रहे हैं या कुछ बेच रही हैं | यहाँ जैसे आदमी लेने के लिए आये हैं इदर-उदर बिचने के लिए हैं ।

चार लोग कड़े हुए हैं। एक एक एक लड़का आदमी साथ जा रहा --

तीन लेडीज़ बैठी हुई हैं डांस कर रही है।

बाइक खड़ी हुई हैं और इसमें --

और उधर में ब्रेंच लग रहा है।